भीमराव आंबेडकर जी की चित्र लगा हुआ है।

दुकान कुछ दुकानों की शटर खुली हुई हैं कुछ दुकानों की शटर बंद हैं।

ऑटो के ऊपर एक यंत्र रखा हुआ है इसे हम क्रेन कह सकते हैं।

स्केलेटन के कर के पास कुछ यंत्र रखा गया है।

और ये एक होटल या फिर रेस्टोरेंट के बाहर का व्यू है।

जिस पर काफी सारा सामान रखा हुआ है।